रखा हुआ है जहा पर दो लड़के या तीन कलर की मल्टी कलर की बॉल साथ ली हुई है।

तीन मशीन लगी हुई है ऊपर लाइट जल री है येलो कलर का खंभा लगा खंभा सा लगा रखा है।

और फाईव सिक्स नाइन फोर वन सिक्स वन ट्वेल --

और दो लाइन में तो ऐसा हैं कि पेंट और शर्ट पहन रखा हैं जो की ड्रेस हैं तीनों लाइन में बच्चो की वाइट कलर की सेम ड्रेस हैं इसलिए ये स्कूल ही लग रहा हैं ड्रेस सेम हैं।

नाव में बैठा है एक आदमी जिसने सफ़ेद कलर की शर्ट पहने हुयी है धोती डाल रखी है और हाथ में डंडा लिया और चाबुक कहते है चाबुक नदी --

ये सामने एक बड़ा सा पेड़ है पर पतला है काफी पतला है।

ऑरेंज कलर की है र एक येलो कलर की है।

शॉप है एक्चुअली अः बाथरूम डिज़ाइन बाथरूम कबोड --

उसपे जो है लाइट लगा रखी है एल_इ_डी लाइट लगा रखी है जो कि लाइट है येलो कलर की लाइट आ रही है और काफी ज्यादा यहां पे जो है अह--

एक ट्रक हैं ट्रक हैं जो की और लोड हो रहा हैं ट्रक में चीज़ एक मशीन भीह--

क्यूब सी एक कैन रखी हुई हैं शायद अअ सामने जो एक ग्रीन कलर की दीवार हैं दीवार पे जो हैं काफी सारी प्रोडक्स वगैरा रहे हुए हैं उपर ए_सी लगा लगा हुआ हैं।

सामने ऊपर बोर्ड लिखा हुआ है श्री शाम सर्विस पॉइंट ओन ऍफ़_बी केयर --

बच्चोके फैंसी रेडीमेड वस्त्र ज्युते वहां चप्पलोँकि बदिया--

और एक अंकल जी शॉप में बैठे हुए हैं पेंट शर्ट पहन के और ये दुकान हैं बाला जी ऑडियो एंड विडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो हैं ये--

शादी का कार्ड शादी कार्ड कार्ड सिंगार होता हैं स दुकान से--

एक शोरूम में हुंडई शोरूम हुंडई हुंडई का शोरूम है। तो हुंडई शोरूम के अंदर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

पोटास बिल अग्रीमेंट बिल बैलेंसिंग वाल नाइट्रोजन एयर करके लिखा हुआ हैं फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं दो --

छत पे और काफी नीला पानी है उसी के साइड में जगह है जो--

अ काफी दूर का है काफी सर्कल में यह दिख रहा है जो पार्क है गार्डन बना रखा है ये--

रोड निकल रखे हाइवे दिख रहा है मुझे थोड़ा सा हाइवे ही है और काफी दूर व्हाइट बिल्डिंग दिख रही है और सामने भी एक व्हाइट बिल्डिंग है।

यहाँ काफीसारी बाइक्स लगी हुयी है और काफी सारी बाइक्स है बाइक्स है अ स्कूटी एक स्कूटी है।

और यहां कॉलम लगे हुए हैं वर्क करने के लिए पर्सनल हर एक--

नील पट्टे से बांधकर पकड़ा हुआ है हाथ से और एक पा अ--

और ये कोई ऊपर लिखा हुआ देहाती ठाठ करके लिखा हुआ है।

भिवानी पेट गैलरिया पेट फूड एक्ससरिज टोइज वगैरह मिलते हैं यहां।

ऊपर लिखा हुआ है एम् _ एम् _ टी _ सी पंप गोल्ड एंड कुछ कुछ लिखा हुआ है दो आदमी बैठे हुए है वहां पर--

ए_ टी_ एम् के उसपे एक लड़का खड़ा हुआ है ये ए_ टी_ एम् है वह पे लिखा हुआ है ए_ टी_ एम् ये लड़का जो खड़ा है जीने पे खड़ा है लकड़िका जीना है।

काफी ज्यादा भीड़ हो रखी है लेडिसो की औरतें ज्यादा है यहां पर औरतों की काफी ज्यादा भीड़ हो रखी है ये कोई चर्च या मंदिर है शायद।

बड़ा काफी बड़ा है नीला कलर में डिज़ाइन दे राखी है काफी अच्छा आदमी लोग भी खड़े हुए है यहाँ पर--

पत्ते भी यहां रखे हैं कुछ भी नहीं सूखा पड़ा है पेड़ बाकी जगह पे ग्रीन है।